इस तस्वीर में एक सड़क का दृश्य दिए गया है पीछे बिल्डिंगे है।

वा एक स्लाइट और एक का फ्रेम है एक व्यक्ति साईकल चला रहा है एक स्कूटर का हिस्सा भीं दिखाई दे रहा हैं।

तस्वीर मे एक सुंदर झरना है झरना पहाड़ी से नीचे गिर रहा--

पानी के आस पास हरे पेड़ और पौधे हैं झरना के नीचे पानी गंदा दिखना--

ये दृश्य बहुत शांत और खूबसूरत दिख रहा है।

भवन के आस पास पेड़ पौधे है ये भवन एक गांव जैसे माहौल में हैं।

प्रोग्राम हो रहा है जस्ट लोग खड़े हैं पानी के केन भी रखे हैं वहां पे एक डस्टबिन जैसा कुछ रखा है कुछ लोग कुर्सियों पे बैठे हैं।

आजू बाजू में बहुत सारे मकान और बिल्डिंगे जैसा भी कुछ दिख --

बुक स्टॉल पर ज्यादा भीड़ है तो यहां पे दो बाइक भी खड़ी हैं।

यह हॉस्पिटल डॉक्टर महाशंकर जनरल हॉस्पिटल है।

छवि में एक झरना दिखाइ दे रहा झरना जलासी में गिर रहा झरना के आस पास पहाड़ हैं।

ब्लू होए का कुछ दिख रहा है जिसपे हरा हरा कुछ लगा हुआ --